वाइट कलर की वॉल्स है ऊपर एक कंप्यूटर लगे है जो दिखा रहा है--

एक येलो कलर की टी-शर्ट में एक आदमी है जिसने ब्लैक पैंट पहनी है --

जो कि शायद अपने सामान के वेरिफिकेशन के लिए खड़ा है उसके आगे एक लेडी खड़ी है उसके साथ एक बच्चा है ।

ये सी_डी मिलता है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी स्किन के लिए प्लस हमें मूड स्विंग्स होता है तो हमें जरूर खाने चाहिए।

ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का सीन लग रहा है ये रेलवे स्टेशन पे काफी सारे लोग खड़े हैं ।

इस इमेज में एक कार दिख रही है जो काफी डेकोरेटेड है शायद मैरिज शादी के लिए जा रही है ये कार --

इस इमेज में रात का समय दिखाया है और इस इमेज में जो फोटो दिखा है जो बिल्डिंग दिख रही है कोई शोरूम लग रहा है बाहर से --

इस फोटो में एक इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा है और एक सामने वाला बैठ के उसे ऑब्जर्व कर रहा है।

और फीमेल भी अपनी अडल्ट एज में है फीमेल्स ने साड़ी कैरी करी हुई है सबने एथनिक वेयर किया कैरी किया हुआ है और साड़ी जो है बनारसी--

इसमें एक लड़की है एक लड़का है लड़की ने अपने पैरों में ब्लू और ग्रे कलर की सॉक्स डाली हुई है लड़के ने सॉक्स नहीं डाली हुई।

ये दुकान एक बुक शॉप है इस पे पोस्टर लगा हुआ है कोई हेड ऑफिस का--

इस मॉल के अंदर सी फूड मिलता है इसका नाम है गवर्नमेंट फूड .